ये एक रॉयल पेट क्योर है यहाँ कुत्तो का बिलियो का खाना मिलता है यहाँ पेडिगिरि बि मिलती है।

यहां पे नीचे बहोत सारी घासं हैं कचरा पड़ा हुआ है और कपाल भी पड़ी हुईं है और यहां पे बहोत सारे--

ये एक बड़ा सा गेट है और यहां पे नेभालया जैन की ये कंपनी है।

और यहां पे आजू बाजू छूट छोटी-छोटी हरी हरी घा और नीचे टायर बिछाए गए और यहां पे छोटा सा रेड कलर का --

एक लक्की सी_ एन_ जी सेंटर है यहां पर कारों को रिपेयर किया जाता है और यहां पर --

दोनों डेटेंटिंग एण्ड पेंटिंग वर्क शॉप भी है यहाँ पर कारों को पैंट भी मारा किया जाता है यहाँ पर बाह--

उपर घड़ी पे फ्रेम लगाया गया है और यहाँ पे बहोत सारे डब्बे भी रखे हुए है और यहाँ पे अगरबत्ती का फूडा भी है और यहाँ पे चार्जिंग के लिए चार्जर भी लगाया है।

लाल कलर का मैट दा लगा उसके नीचे पीछे बहोत सारे व्हाइट कलर के पर्दे भी डाले गए हैं यहां--

और यहां पे बहोत सारे फ्रूट्स के और यहां पे फ्रूट जुट हुवें--

यहां पे एक बड़ा सा हाईवे है और यहां पे कार्स को चेक किया जाता है गाड़ियों को आने जाने और यहां पे बहोत सारे--

ऑफिस मे भी रखे हुए है और यहाँ पर कार भी जा रही है और आजू बाजू वायर के खंभें भी है और वायर भी है।

ये एक पार्क है डियर सफारी यहां पर बहोत सारे हिरंस के पोस्टर लगाए गए हैं।

और यहां पे गेट बंद है और पीछे लोग भी और यहां पे एक साइकिल के ऊपर--

और स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है और यहां पर राइट साइड में साइकिलें भी रखी गई और यहां पे कटिंग का काम भी चालू है।

और यहां पे छोटी सी बच्ची को टेबल पे बैठाया गया और यहां पे मोबाइल भी चालू है और यहां पे लेडिस जेंट्स सभी कुर्सियों पर बैठे हुए--

ये एक ऑफिस है और यहाँ पर बहुत सारे लैपटॉप भी है टी_वी भी है।

ये एक घर है और यहां पे बहोत सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं और उनमे सामने गिलास का एक --

और यहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मशीन चालू है यहां की।